तो बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है यहां पे एक आदमी बैठा--

दिखाए थे उसपे बहुत सारे पेड़ पौधे ल --

और यहां पे बहोत सारी पत्तल रखी हुई है जैसे गिलास कटोरी पलेट और भी बहोत सारी चीजें रखी हुई है।

कोट पैंट पहनकर अपनी फोटो खिंचवाना रा और बहोत सारे लगे और यहां बहोत सारी--

अ लाइटो से इसको सजाया था यहा पे एक आदमी खड़े होकर मे फोटो खिंचवाया यहा पे एक पाइ--

मोती लगा उसके गले में माला लगा--

यहां पे छोटी से बंधे हुए यहां पे एक--

यहां पे एक बिल्डिंग बनी है जो खुद की बहुत बड़ी है।

यहां पे एक मकान बना हुआ है उसके ऊपर टीन लगी हुई है।

यह एक समारोह की तस्वीरे यहा पे बहोत सारा खाना रखा हुआ है।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

यह एक लाईब्रेरी दिखा रहे है यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है यहां पे एक आदमी फोन देख रहे हैं यहां पे बहुत सारे बच्चे और आदमी --

ट्रैक्टर जा रहा है यहां पे टैंट के पास एक पानी का ड्रम रखा हुआ है और यहां पे--

यह एक किचन की तस्वीर जो कि अभी बन रहा है यहां पे--

सामने घर बने हुए हैं यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है यहां पे एक--

बिजली का खंबा भीं लगा हुवा हैं जिसमें तारे आ जा रहीं हैं।

यहां पे घर बना हुआ जिसमें नी हरे कलर का पेंट किया गया यहां पे बहोत सारे लोग --